सामने में इमेज हमें --

सामने में एक गार्डन दिख रहा है जिसमें --

इमेज में हमें बहुत सारी लडकियाँ दिखाई दे रही हैं।

पास में कुछ पीले और सफ़ेद बलून लगे हैं।

सामने हमे लाल रंग का कुछ दिल दिखाए दे रहे हैं ये सभी एक रस्ते के चारो तरफ --

पे जाली लगी हुई है वहां --

पास में ही कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिख --

ऊपर की तरफ लाइट जल रही है।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए है पीछे की तरफ बहोत सी बसे खड़ी दिखाई दे रही है।